अरमानी एक्सचेंज लिखा है ब्लू कलर की पेंट पहना है इसके पीछे रेड कलर की फ्राक टंगी है सामने अलमारी के अंदर पन्नी के अंदर कपड़े रखे है।

सामने दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है और एक डमी भी है एक बच्चा खड़ा है उसने मास्क लगाया हुआ है ।

ऊपर हरी कलर की पत्तियां दिख हरी हैं शेर के पीछे कुछ पेड़ दिख रहे है शेर का कलर ब्राउन है।

यह पार्क दिख रहा है जहां रात हो रही है बेठने के लिए कुर्सी दी गयी है जो ओरेंज और ग्रीन कलर की है उनके हैंडल ब्लेक कलर का है सामने एक ग्रीन कलर का डस्टबिन लगा है।

हम्म दीवार दिख रही है एक दरवाजा और एक खिड़की दिख रही है कुछ आदमी ऊपर चढ़े है।

सामने मूर्ति दिख रही है।

एक हाथ में कप दिख रहा है जिसके ऊपर चोकलेट जैसा कूछ बना है कॉफ़ी बनी हुई है सामने एक खम्बा लगा हुआ है और एक घर दिख रहा है।

यहा लव बर्ड्स दिखाय दे रहे है ग्रीन कलर के ब्लेक है आई है ब्लू कलर वाईट कलर भी है उनके निचे एक जालिया के अंदर खाना रखा है वो डंडे के ऊपर बेठे हुए है।